ऑरेंज लाइन बसेस खड़ी है और कुछ खास उसके तरफ आ रहे हैं।

इसपे बहुत ही रश लगा हुआ है इसकी टाइमिन से एक दिन को और शाम में चार से दस बजे तक कि है।

ये एक वायसी इलेक्ट्रिक विहीकल कम्पनी के यात्री सुपर डीलक्स के नाम से एक दुकान कि ओपनिंग की तस्वीर है इस --

इसने हैंड्सफी भी पहनी हुई है और हाथ में पानी की बोतल भी--

प्लान में किसी की बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए--

और पौधों के बीजों को भेजती है इसके अलावा इसके इर्द-गिर्द ।

इसमें एक लड़का और लड़की बैठे हैं लड़की ने सिर झुकाया हुआ है ।

और इसके अलावा आग बुझाने के लिए जरूरी सामान भी है।

और उसने अ ब बैग भी पहना हुआ है जैसा लग रहा है जैसे बोट ट्रैवलिंग मूड में है।

के साथ उसकी खूबसूरती के साथ और पानी के कर रहा है।

अ बारिश के साथ हर अ धुली-धुली हर चीज बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही --

ए बहुत से हार और अगुठीया और बाकी आइटम सामने सामने रखे गये है ताकि लोग उनको सेम्प

कोल्ड की बहुत ही डिमांड है औरते इसकी बहुत शोकिन होती है और इस दुकान कि बहुत अच्छी सेल्लिंग हो रही है ।

बोर्ड्स हैं बिल बड़े-बड़े बिल बोर्ड्स लोगों के अट्रैक्शन का बायस बने हुए हैं।

और साथ में एक छोटा बच्चा अ साथ बैठा है जो उसकी हेल्प कर रहा है असिस्टेंट के तौर पे।

बेड और बाकि चीज़े भी लगी बनी हुई है और सा फिटनेस मोटिवेशनल चैंपियन के साइन बोर्ड भी लगवाए हुए है।

इसकी कुर्सी का कर कलर ब्लू है और इसमे सनीताईजार का इस्तेमाल भी किया किया गया है।

फल में इसने मछली के कुछ टुकड़े भी डाले हुए है और एक मछली को हाथ में ऑ छुली लेकर काट रहा है ।

ये किसी सुपर स्टोर में फ्रूट एरिये की तस्वीर है जिसमें छोटे छोटे शेल्फ बनाके--